यंहा कुर्सी के कलर लाल वा कुर्सी के डानटी के कलर करिया वा।

घर के आगे गाछ वाछ लाइट वाइट सब कुछ लागल वा।